और पेड़ है वो और आ रही है। आसमान है वो और रही है।

पीछे पेड़ है नीम का और आगे दुकान लगी है ठेले पे खसते चावल की राइस और चाट बिक रही है इसमें और दाल चावल बिक रहें हैें छोले भठूरे बिक रहें हैं।

बड़ बड़ जहाज है वो बहुत अच्छा लग रहे हो। जहाँ पे लोग रुकते होंगे पिकनिक मनाते है वो मान हाज हैंगे रुकत होंगे ज का चीज फैक्ट्री लग राऊ है। होटल लग राऊ है लोहै को बने हुए जाल होंगे यहाँ पे ।